पानी वाइट कलर में दिख रा है और इसके आस-पास में कुछ मिट्टी वगैरा दिख रही है। कुछ सूखी लकड़ा वैगेरा दिख रहे हैं और आस-पास में कुछ घाँस भी दिख रही है ग्रीन कलर में आसमान दिख रहा है आसमान ब्लू कलर --

दिख रहा है। शॉप के अंदर काफी सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए दिख रहे हैं। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर में। कुछ यहां पर सामने में गेट वगैरह दिख रहे हैं। कुछ बलूंस वगैरह दिख रहे हैं।

इस मंदिर के सामने एक गेट दिख रहा है। गेट के सामने यहाँ पर कुछ आस-पास मिट्टी वगैरह दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पेड़ है जो ग्रीन कलर में है आसमान दिख रहा है। आसमान ब्लू कलर मे दिख रहा है कुछ बादल दिख रहा है व्हाइट कलर के।

सामने मे में एक कार दिख रही है। कार व्हाइट कलर की दिख रही है और आस-पास में काफी सारी बिल्डिंगे दिख रही हैं कुछ ब्लू कलर का पेंटिंग किया हुआ है कुछ व्हाइट कलर भी किया हुआ दिख रहा है और यहाँ पर काफी बड़ा गेट भी दिख रहा है जो ब्लैक कलर में है। एक बिल्डिंग के सामने में कुछ तार दिख रहे है जो ब्लैक --

और सामने में ही गेट दिख रहा है जो काँच का गेट दिख रहा है और यहाँ पर कुछ रक्खा हुआ दिख रहा है।

पीछे एक बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग काफी बड़ी दिख रहा है। बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है कुछ व्हाइट कलर में है और यहाँ पर काफी सारी विंडो दिख रही हैं।